भाषण दे रहा है और इसके पीछे बहुत सारी तस्वीरे बनाई गई है जो की बहुत पुराना है और यह क्रिश्चियन का तस्वीरें हैं।

ठीक उसके पीछे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हैं जो की बहुत सुन्दर दिख रहा है और एक घंटी भी दिख रहा है |